यहाँ पर एक पूल दिखाई दे रहा है पूल के बगल में सारा पानी है देख के लग रहा है की ये डैम है डैम के ऊपर में स्कूटी भी खड़ा है व्हाइ --

यहाँ पे मुझे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल के बगल में कुछ बैंगनी रंग के लाइट भी ले हुए है स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है।

के ऊपर में वाइट कलर से लिखा हुआ है नीचे में जूता पहना हुआ है पीछे में एक और आदमी है जिसने हाफ पैंट पहेना हुआ है और टी शर्ट डाला हुआ है शरीर--

व्हाइट कलर का कपड़ा दिया हुआ है बगल में जो आदमी खड़ा है उसने पीले कलर का टी शर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर का पैंट है।

दूर में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं पहाड़ के ऊपर में बहुत सारे ग्रीन कलर के पेड़ हैं।

यहां पे बहोत सारे स्टैचू रखे हुए हैं स्टैचू को कपड़ा पहनाया गया है देखके लग रहा है कि कपड़ा का दुकान है यहां पे कुछ कपड़े टंगे हुए भी है।

साइड में पुरुष बैठे हुए हैं राइट साइड में महिलाएं बैठी हुई हैं उसमें से कुछ महिलाओं ने व्हाइट कलर साड़ी पहना--

यहां पे बहोत सारे सामान रखे हुए हैं। देख के लग रहा है की दुकान है। इसमें से कुछ कपड़ा भी है कुछ खिलौने भी है कुछ टिफिन बॉक्स भी है एक पेंटिंग भी है।

यहाॅं पे बहोत सारे गाड़ी दिखाई दे रही है एक गाड़ी का कलर व्हाईट है एक गाड़ी का कलर रेड है इसमें कुछ लोग भी खड़े हैं आ--

उसके ऊपर में लाइटें भी लगी हुई है। वाइट कलर की एक आदमी भी है जिसने ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ है। ब्लैक कलर का--

वो हरे रंग का है बच्चे ने ब्ल्यू कलर का शर्ट पहना हुआ है बगल में--